डस्टबिन भी रखा हुआ है और यह रूम करकट का बना हुआ है।

उसके ऊपर दो टंकी रखी हुई है।

इसके ऊपर बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

उसने ब्लू कलर की और वाइट कलर की टी शर्ट पहनी है।

और एक आदमी हाथों से कुछ इशारा कर रहा है।

और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और नीचे बहुत सारी घास भी है।

जनरेटर रखा हुआ है और एक खंभे के ऊपर से तार जा रही है।

इस फोटो में एक ट्रक दिख रहा है।

यहां पे दो दुकान दिख रहे हैं।

बगल में एक रूम है।

नीचे पैर और कॉपियां भी रखी हुई है।

और बाहर एक शीशे का गेट लगा हुआ है।

और सामने बहुत सारी बाइके खड़ी हैं।